केबिन है एक लड़कियों का कलर कॉपीस के समान है।

पब्लिक हैं बहुत सारी स्टेज पे शो ज़्यादा लोग खड़े हैं।

बहुत सारी बीयर की बोटल है काँच की बोटल है और।

एक शेल हम ऊपर शेल है।

अच्छे दिख रहे हैं देखने में भी अच्छा हैं दो ग्लास हैं।

ओनर हैं चेयर्स रखे हैं साफ़ सफाई देख रही हैं।

हरी घास है छोटी-छोटी पेड़ है।

बाथरूम हैं प्योरीफायर बेसिन ।

कपड़ों की दुकान है स्पोर्ट्स के कपड़े दिख रहे--

एसी दिखे चेयर डिफरेंस छोटा कूलर है।